जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये दिन का समय है बहुत सी गाडियाँ नज़र आ रही है एक कर खड़ी हुई है जो वाइट कलर की है और एक औ --

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक हाॅल है और एक बाॅशरूम है हॉल में--

दूर-दूर पे बहुत सारी कार पार्क की गई है और एक अंकल गाड़ी में जाते हुए नजर आ रहे हैं ।

फैविकुइक्स भी हैं फॉरच्यून करके बहुत से पैकिट्स भी लगे हुए हैं।

कॉर्नर में जैसे की एक पौधा रखा हुआ है बहुत ही अच्छी वेनटीलेशन है बहुत ही अच्छा इंटीरियर भी नज़र आ रहा है।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये जिम है और इसका इंटीरियर ज़्यादातर जो है वो ब्लैक है और इसका फ्लोर भी जो है वो ब्लैक कलर में ही है।

और साथ ही में एक पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है कीप योर आईज ऑन दा गोल ।

अंकल के हाथ में कुछ तपला है और एक अंटी के हाथ में भी कुछ ऑरनोमेंट है दोनों मिलके अच्‍छे से संगीत बजा रहे हैं।

और बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है हिल साइड मिज़री एण्ड गार्डन ऑल काइन्ड --

जैसे की मैं देख पा रही हूँ ये एक योगा क्लास लग रहा है जहाँ पे दो आंटीस दो ऑरेंज मैटस पे योगा करती हुई नज़र आ रही है ।

और एक काउंटर भी रखा हुआ है और साथी में एक टेबल है जिस पे बहुत से रखे हुए हैं और जिस पर।

दो साइकल्‍स भी खड़ी हुई है और दो अंकलस भी जो है ब्रज जैसा है उसपे खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इस खूबसूरत--